तस्वीर एक कोचिंग की तस्वीर है। जहाँ पे बच्चे तैयारी करने जाते हैं यहाँ पे तरह-तरह की तैयारियाँ कराई जाती हैं जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी मेडिकल की तैयारी।

लोग यहां पे खरीददारी करने के लिए जाते हैं ये बहु मंजिला इमारत होती है यहां पे लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं।

फिर एक अकडमी की तस्वीर है जिसका नाम अमर ज्योति आंबेडकर है।

तस्वीर सारनाथ में स्थित बौद्ध मंदिर की तस्वीर है इसका देश विदेश में मान्यता है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहां पर घूमने--